इस चित्र में एक अनिर्मित घर का दृश्य है जिसके ऊपर छत पर धुलाई का काम हो रहा हैं।

अंदर कि तरफ एक शीशे से बना काउंटर बना हुआ है जहां पे फूल और कुछ चॉकलेट्स भी रखे हैं उसके बगल में कुछ दुकानें हैं जो शटर वाली दुकान हैं।

बाई ओर एक रास्ता जा रहा है जहां पे रिक्शा स्कूटी और कार दिखाई पड़ रही एक महिला भी जाती हुई दिखाई--

हर केबिन के ऊपर एक बैग और कुछ किताब कॉपीया रखी गई है एक पंखा भी दिखाई पड़ रहा है और एक पर्दा भी दिखाई पड़ रहा है दीवार पे एक पोस्टर भी दिखाई पड़ रहा है जिस --

एक बैरियर भी दिखाई दे रहा है जो काले पीले रंग का है।

इस चित्र में एक चर्च का दृश्य है जो काफी खूबसूरत सजाया गया है उसके दीवारों पे कुछ पत्थरों से उकेरी गई चीजें हैं।

जिसने जैकेट और जींस पहन रखा है और टोपी भी लगा रखा है।

वो पानी को निहारता हुआ नजर आ रहा है दूर तक काफी पानी दिखाई पड़ रहा है।

इस चित्र में एक खेत दिखाई पड़ रहा है जहां पर काफी पीले पीले फूल लगे हुए हैं दो व्यक्ति नीचे बैठ करके फूलों को तोड़कर जमा कर रहे हैं जिन्होंने शर्ट और लुंगी पहन रखी है।

एक अगरबत्ती भी दिखाई दे रही हैं जो काले रंग की हैं उससे धुआं निकल रहा है।

कुछ गुंबद जैसे पार्ट भी दिख रहे हैं जो सफेद रंग के हैं लाल रंग का दीवारों पे पेंट भी किया हुआ है एक दरवाजा दिखाई पड़--

ऊपर छत पे एक बाजा चुंगा भी लगा हुआ है जिसपे एक झंडा भी लगा हुआ है।

लाइट्स दिखाई पड़ रही जलती हुई आसपास कुछ बोर्डस भी दिखाई पड़ रहे हैं।

कांच का दरवाजा बना हुआ है ऊपर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है बिजली का खंबा भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

काफी किताब कॉपीया भी दिखाई दे रही है फूलों से सजावट है।

उसके पीछे भिंडी हरी मिर्च परवल प्याज--

पार्क का आवरण लाल रंग के लोहे से कवर किया हुआ है सामने वाली बिल्डिंग में रांची लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है जो लाल रंग की और सफेद रंग की है।

चित्र में दाहिनी तरफ एक बिल्डिंग है।

खाली कुर्सी भी दिखाई पड़ रही है और पूरे एरिया में एक--

पीछे प्लास्टिक की कुर्सियां है और एक व्यक्ति और दिखाई दे रहा है।

बाहर काफी दो पहिया वाहन पार्किंग में लगे हुए हैं और वहां पे बोर्ड पे पिज्जा भी लिखा हुआ है।

जस्ट बने हुए हैं पिलर्स पे लाल बॉर्डर भी दिया हुआ है काफी ऊपर पंखे भी टंगे हुए हैं।

काउंटर सफेद रंग का है उसके पीछे साइड लाल रंग की टीशर्ट पहने एक व्यक्ति खड़ा है।

और दीवारों पे कुछ कलाकृति बनाई हुई है।

चित्र में कैफेटेरिया दृश्य दिख रहा है बाहर एक जो एक हैंग टांगा हुआ है उसमें अप डाउन कैफे लिखा हुआ है।

टॉय कार दिखाई पड़ रही है उसपे एक बच्चा बैठा हुआ है।

यहां एक और छोटी सी बच्ची दिखाई पड़ रही है एक महिला हैं उसके हाथ मे एक बाल दिखाई पड़ रहा हैं।

दाहिने तरफ शटर वाली गेट और शीशे वाली भी गेट दिखाई पड़ रही है।